और यहां पर बहोत सारे स्कूटी और बाइक रखे हैं और बहोत सारे--

और यहां पर अलग अलग कपड़े--

कार का कारखाना है गाड़ी खराब है।

सामने एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा गेट है जिसमें बहुत बड़े बड़े मंदिर--